खाने के स्नैक्स रखे हुए हैं और काउंटर में सजा के रखा हुआ है और यहां पे--

बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है।

और बहोत ही सुंदर तरीके से यहां पर वो काम कर रहे है बच्चे--

लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है।

स्विमिंग पूल की डेकोरेशन की गई है और अच्छी भी--

लगाए हुए हैं काफी सुंदर लग रही हैं डेकोरेशन और बहोत ही अच्छे तरीके से--

ये एक ग्रंथ साहिब जी है जोकि बहोत ही अच्छे तरीके से यहां पे--

बड़ा ठीका है सामने एक और भी छत पड़ी हुईं हैं और सड़क के किनारे--

एक आदमी यहा सामने में खड़ा हुआ है और बहोत ही बड़ा--